सारे यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ा है और चारो तरफ घाँस वगेरा गुलदस्ता वगेरा फुल वगेरा लगा रहे है और काफ़ी भीड़ है।

पैर वैर सब मसाज करा रहे है ये भाईसाब से और टेनर से और यहाँ पे काफ़ी सारे--

पेड़ पोधे लगे हुए है हरा भरा उधर जंगल झाड़ी है और काफ़ी दूर.--

सब चाचा लोग चाची लोग और दादा-दादी सब कोई आया हुआ है।

लगे हुए हैं स्कॉर्पियो और यह भाई सब कुछ लगा रहै हैं उसके --

ये ट्यूशन है और ये बच्चे लोग को शिक्षक की तरफ से यहाँ पर पढ़ा रहै हैं और यह साइंस को लेकर पढ़ा रहै हैं।

कर रहे हैं और यह बता रहे हैं टीचर यहाँ पे कि ये-ये यह होमवर्क बना के लाना है इसी कारण यह भाई साहब देख रहे हैं और बना रहे हैं देख सक--

ये जाल माछ है और काफी ताजा मछली है और यहाँ पर बहुत सारे आदमी आते हैं।

जाल मछली है बड़ा छोटा और बहुत ही पॉलिथीन में इस पैक करके रखा हुआ ताकि खराब ना हो --

कष्ट करना पड़ता है और अभी यह लोग भूखा है और बहुत ही--

रखा हुआ है यहाँ पे पेड़ है और भी--

और ये सिस्टर लोग देख रहे है यहाँ से -

झंडा का ओर काफी ऊंचाईयों पे है और यहाँ पे लेहरा रहे है मतलब कदे --

बहुत ही पुराना जमाना का डिजाइनिश से पलंग बना रहै हैं और दीवान पलंग बना रहै हैं।

अवंतिका रेस्टोरेंट है और काफी कपलस घूमने के लिए आते है फैमिलीस घूमने के लिए आते है।

बहुत ही सारे साइड साइड में पेड़ लगाया ताकि छांव रहै और यहाँ पे किसान भाई --

आदमी सीखते हैं क्योकि यह ताजा है और बहुत सस्ते में देता है।

मोहिनी स्टोर है ब्यूटी पार्लर है।

ऐसा मतलब सुबह- सुबह ग्राउंड वर्क करने के लिए-

एन्जॉय लेते हैं इधर से उधर और उधर--